और बहोत ही सारे हैं देख सकते हैं कालाजामुन।

मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को इधर ए.सी वैगेरा लगा हुआ हैं पलज पे देख सकते हैं और ये प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें--

ये रेलवे स्टेशन है और काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं।

बहोत ही प्यारा सा सीन दिखाई दे रहा और यहाँ पे लाइट वैगेरा लगा हुआ हैं और शीशे का हैं।